यहा एक दुकान है। दुकान के फर्श पर बहुत सारे छोटे-छोटे डंबल रखे है। और कुछ डंबल रैक पर रखे हुए है।

मशीने रखी है। जिनसें लोग कसरत करते है। ऊपर बड़ी बड़ी रॉड लगी है। जिम के हॉल मे रोशनी हो रही--

रखे लगे है। जमीन पर कुछ गद्दे रखे है। सामने की दीवारों पर पंखे और लाइट लगी है।

दिन का समय है। आसमान के नीचे नदी है।

और बगल से एक गली है जिस मे छोटे-छोटे हरे पौधे रखे है।

यहाँ एक छोटासा रास्ता है रास्ते पे मिट्टी और घास है।